ये दिख रहे हैं लड़की दिख रही सभी के हाथ ऊपर की ओर दिख रहे हैं कमर से लगा हुआ दिख रहे हैं। कुछ योगा करते डांस करते हुए क्लास लगी हुई दिख रही है। ब्लैक कलर से नाम लिखा हुआ दिख रहा है।

पीले कलर की खम्भे दिख रहें हैं। इसपे रेड कलर की लाइन वगैरा दिख रही है। पानी दिख रहा है और पक्षी की फोटोज लगे हुए दिख रहें हैं।

कपड़ो की दुकान दिख रही है उसमे बहुत सारे कपड़े रखे हुए दिख रहे है पेंट कोट साड़ियां लेगी कुर्तिया वगेरह जीन्स टॉप दिख रहे है।

दीबिल दिख रही है दीबिल पे कलर दिख रहा है व्हाइट कलर खिड़कियां दिख रही है जामुनी कलर दिख रहा है नीचे।

बहुत सारे जेंट्स दिख रहे है कैप लगे हुए दिख रहे हैं सभी के नीले कलर के टोपी रोड दिख रहा है रोड पे बहुत सारे --

हाता लगी दिख रहीं हैं। रंगी बिरंगी कलर की नील कलर की दिख रही है पीले कलर की दिख रही है रेड कलर की दिख रही है।